लड़का जींस पहना हुआ है ब्लैक कलर का बैग टांगा हुआ है ब्लैक कलर का जींस और वो पिंक कलर का शर्ट और ग्रीन कलर का बैग टांगा हुआ है और ये मट्टी खोद रहे हैं दोनों जेन्स --

पर एक ठो दुकान खुली हुई है जिसमें कुछ फल रखे हुए हैं केला सेब अनार और यहाँ पर किसमिस रखा हुआ है छुवारा रखा हुआ है।